देख सकते है यहाँ पे एक बड़ा पत्थर है और बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पहाड़ है और देख सकते है आप ऊंचाई इतनी हो गई है पहाड़ो की की लगता है जैसे की में नीचे खड़ा हूँ पहाड़ तो बहुत बड़े है और आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारी घास है और पेड़ पौधे है।

हेलो गाइस जैसे आप देख सकते हैं मै आपका शेह्ज़ाद कुरैशी आप देख सकते है ये एक --

और आप देख सकते है यहाँ पे फूलो - फूलों से बहुत कुछ बना रखा है | यहाँ पे ये एक किसी दुकान है या फिर किसी घ- या फिर किसी लड़की ने घर पे बनाया है ।

गाइस में आपका रात का दृश्य में देख सकते हैं। ये बोहोत बड़े- बडे पहाड़ है और इनपे ही पहाड़ पे देख सकते हैं नीचे भी नीचे कुछ शायद जगह है और ऊपर देख सकते हैं कि कितनी हरियाली है कितने पेड़ हैं |

जैसे की आप यहाँ खड़े हो अब ये देखिये किसी घर से रेलिंग है और यहाँ पे कितने सारी घर दिख रहे हैं या कुछ और फैक्ट्रियां दिख रही हैं कितना प्यारा नज़र लाग ला है।

दूसरी मंज़िल है जहा पे कुछ और कुछ या या तो एक घर है और आप देख सकते हैं और आप देख सकते है यहाँ पे एक जंगला है और आप देख सकते हैं वहां रूम है जहा संदूक रखे हैं पूरे चार संदूक है और इधर भी संदूक रखा है और सामान बहुत है जैसे की कोई शिफ्ट --